कुछ डिस्पोजल रिखाई दिखाई दे रहे है।

पार्क के अंदर कुछ जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

कंक्रीट दिखाई दे रहे हैं रोड़ियां दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं लाइट दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं मिट्टी दिखाई दे रही है।

प्लास्टिक की कुर्सी दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रही है प्लास्टिक की की टेबल दिखाई दे रही है।